साइड पर पेड़ों है और इसके नीचे एक जमीन दिखाई देता है और देखने में बहोत ही सुंदर है।

इस तस्वीर में हमें यह नजर आते हैं कि छह आदमी है इसमें और एक आदमी ने लाल तूपी लगाया है।

इस तस्वीर में हमें किताबें देखते हैं और ए_सी भी दिखाई देते हैं।